हां तो दोस्तों मेरे सामने पूमा के जूते दिखाई दे रहे हैं।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

हां तो दोस्तों मेरे सामने है राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोकि बीकानेर में स्थित है।

हां तो दोस्तों मेरे सामने कार की एजेंसी है।

अंदर शंतरी ब्लू ग्रीन रंग के बलून लटक रहे हैं जो की--

बहोत सही दिखाई दे रहे हैं जो की ये सब--

हां तो दोस्तों मेरे सामने एक दुकान है।

बैलून भी लटक रहे हैं रेड कलर के और येलो कलर के और पास में जो एक टी_वी_एस है जिसके पीछे सॉस वाली बोतल --

हां तो दोस्तों मेरे सामने कुछ कार्टून है जो कि बड़े बड़े हो रहे है खाली दिखाई दे रहे हैं मुझे तो।

और व्यक्ति भी बड़े बहोत है और वो देखो गाड़ियों के पीछे बाइक भी कितने हैं।

जिसका कलर है पिंक और व्हाइट इसके आगे कुछ मलाएं भी लटक रही है।